और ये बहोत ही सुंदर सा दृश्य बनाया गया है।

यहां पे एक ट इनोवा का गाड़ी खड़ा हुआ है जो की टोयोटा का है।

ये एक पार्क है जहां पर बहोत सारे बच्चे डाईंग या कुछ कर रहे है कॉपी में--

ये शायद आई शॉकी या कुछ का गेम चल रहा है अंदर बहोत सारे जो लोग भी देखने के लिए आए है।

लोकल इनको शायद इस जगह में कुछ सीक्रेट सा जगह है वो उधर चल-चल के जा रहे हैं।

वहां पे इंग्लिश ओड़िया और हिंदी इन तीन लैंग्वेजेस में--

मतलब सामने एक बिल्डिंग है राइट साइड में जिसका ऊपर खुर्दा लिखा गया हुआ है।

ये अपना जो दुर्गा पूजा होता है वहां का मंडप है।

और यहां पे पुजारी भी हैं जो शायद कुछ हो गया फिर चंदन दे रहे हैं।

जो कि व्हाईट कलर के ड्रेस उसमें कुछ फूल है वो पेहने हुई हैं।

यह एक मन्दिर का अंदर का दृश्य है।

श्री राम जी और हनुमान जी का मंदिर है।

उनके यहां पे बहुत सारे फोटो लगाए गए हुए है और रखे भी गए हुए हैं।

और बाकी के लोग इंतजार किए हुए हैं उनके बरि का--

जहां पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे है कुछ एक उनका--

और जितने भी बच्चे हैं वो सारी लड़कियां हैं।

और एक ऑटो भी है जो की बस के लेफ्ट साइड में है।

फिर वो आदमी शायद कहीं पे लेफ्ट साइड में देख रहा है।

ब्लू कलर का शर्ट पेंट पहन के एक आदमी खड़ा हुआ हुआ है।

ये मतलब एक तीन-चार लोग हैं।

वहां पे एक लड़की और एक लड़का खड़े हैं ब्लू शर्ट पेहेन के।

और उसके ऊपर जो लेदर है वो ब्लैक कलर का है।

और बाहर की तरफ से बहुत ही सारा धूप आ रहा है जो कि साफ साफ पूरा पता चल रहा है।

और येलो सा हिरन सारे बहोत खुश हैं।

और वहां पे एक आदमी बीच में खड़ा हुआ है।

कुछ एक डेकोरेटिव जगह है जहां पे--

और पीछे एक फाउंटेन टाइप का भी बना हुआ है जोकि बहोत अच्छा दिख रहा है।